ये ढाबा है यहां पे कोल ड्रिंक उपलब्ध है खाने का बहोत सारा सामग्री उपलब्ध है वहां पे कई सारे वर्कर हैं और बहोत सारे यहां पे पब्लिक जुटी हुई है।